और एक जैकेट पहनाया हुआ यहां पे--

ये एक विशाखा डेअरी पार्लर है विशाखा डेयरी पार्लर है यहां पे एक चार आदमी और दो --

और टी_वी लगी हुईं हैं झुम्बर लगा हुआ हैं पंखा लगा हुआ हैं कुछ लाइटें लगी हुई हैं पर्दे भी लगे हुए हैं।